के अंदर कई खिड़कियां दिख रही है जिसका कलर ब्लैक दिख रहा है गेट का कलर ब्राउन दिख रहा है और एक बोर्ड भी है जिसका कलर ब्लू एंड ब्लैक दिखाई दे रहा है।

और दीवारों पर ऑरेंज और व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है और व्हाइट कलर